यहां पे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा--

यहां पर बहुत सारे गमछों को रखा गया है।

यहां पास मंदिर के अंदर बहोत सारे बल्ब लगाए गए हैं यहां पास बहोत से पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं चारों ओर बहुत सारे सामानों को अलग अलग तरह से जमाया गया है।

और यहां पास बहोत सारे अच्छे अलग अलग ड्रेस में खड़े हुए हैं यहां पर बहोत सारी साउंड बॉक्स लगाए गए हैं।

अंदर के तरफ में एक पंखा लगा हुआ है बाहर एक ड्रम रखा गया है साथ में कुछ कैरेट भी रखी हुई हैं यहां पर दो लोग खड़े हुए हैं।

सामान दिखाई दे रहा है साथ में यहां पास बहुत सा आर_ओ रखा गया है यहां पास बहुत सी लाइटें लगाई--

यहां पास मुझे बस दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर एक बहोत बड़ा पोस्टर लगाया गया है।

साथ में यहां पास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और बाहर की तरफ में दुकान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है।

बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग भी खड़े हुए हैं और यहां पर कुछ कैमरे भी लगे हुए--

और यहां पल बहुत सारा पेंट नीचे बितला हुआ है।